दुकान जिसके बाहर थाट की जो की तस्वीर भी बनाई हुई है और हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड-पौधे दिखाई दे रहे है बहुत ही सुंदर दृश्य --

और इसमें चैन सिस्टम भी लगे हुए हैं जिसमें गाड़ी रिपेयरिंग होने के लिए आई हैं वॉशिंग सेंटर भी हम इसे कह सकते हैं कुछ पुरानी पुरानी गाड़ियां अभी खड़ी हुई नजर आ रही है जोकि --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे कुछ लोग जोकि ना स्नान करते हुए नजर आ रहे है जीसमें लेडिस और और --

जो कि पलंग भी दिखाई दे रहें है ये बहुत बड़ा हॉल है जिसमे पंखे ही पंखे लगे हुए हैं इसमें जो की शादी को देने वाला दहेज का सामान दिखाई दे रहा है।

क्योंकि बाहर की तरफ में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं ये गाड़ी के सामने का गाड़ी का गैरेज सेंटर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर की तरफ में बोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि ये राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर है।

जिसके ऊपर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लड़कियां आती जाती दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे यह रेस्टोरेंट या कॉफ़ी जबकि होटल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर के तरफ में बोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक धार्मिक स्थल दिखाई दे रहा है जो कि मुझे एक देव स्थान लग रहा है जिसके बाहरी तरफ में --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे ऑन रोड दिखाई दे रहा है जिसमें पीछे की तरफ में मुझे कारें ही कारें नजर आ रही हैं।

मंजिला दिखाई दे रही हैं और ये एक जो कि शहरी इलाका लग रहा है बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें --

इस तस्वीर मे मैं देख पा रहा हूं मुझे एक टॉवर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर की तरफ मे आसमान खुला हुआ नज़र आ रहा है ये एक टॉवर है जिस बहोत ही --

और जो कि कारें इधर उधर चलती हुई दिखाई दे रही है आसमान खुला हुआ स्वस्थ दिखाई दे रहा है और एक पानी की टंकी भी नज़र आ रही है।